इस दृश्य में बहुत सारी लड़कियां नृत्य कर रही हैं।

नीचे का फर्श भी भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा--

दीवार पे वायरिंग किया हुआ है जोकि सफेद रंग का छोटा छोटा बोर्ड लगाया हुआ है।

साइड में लंबे लंबे लकड़ियां और बांस रखी हुई है जो कि भूरे और काले रंग के हैं।

आगे में चार बाइक दिखाई पड़ रही हैं जो कि काले रंग की है।

साइड में एक पीले रंग का पोस्टर लगाया उसपे नीले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

दीवार का कलर सफेद है।